मेरे प्यारे भाई और बहनों यह एक दोकन है।

पाहाड़ के बाहर कुछ गाड़ियां भी खड़ी--

फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के दुकान है जहां पर ताजे--

और इसके बाहर भी एक बाइक पार्क हुई है।

भाइयों और बहनों ये कोई कैफे है जहां पर--

बहोत बड़ा पार्क है जिसमें बहुत से झूले--

अपने चेयर पर बैठें हैं और कुछ मरीज--

भैय्या और बहनों ये एक होस्टल का कमरा हैं जं--